सामने कुछ पौधे हैं। उन पौधों का कलर बहुत अच्छा है। उस पौधे का कलर एक पीला है।

सामने एक रूम है रूम पर एक लिंग लगी हुई है उसे पर एक एल_इ_डी टी_वी है उसमें कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। आजू-बाजू में --

सामने कटाई जैसा है ऊपर बहुत सारे लाइट्स लगी हुई है।